साइड में देखिये दुकान है जिस पे अमूल कूल का एक बैनर लगा है आगे देखा जाये तो --

और एक बंदा जो है वो अपने चार्ट पेपर समेट रहा है और ऐसा कुछ बना रहा --

आ यह फोटो जो देखा जाय यहाँ रोड पर से ली गयी है ।